कुछ जिम दिखाई देगा जिम मे कई मशीन रखी हुई नजर आ रही है।

और एक फोटो मे बॉडीबिल्डर भी दिखाई दे रहा है उसके उपर सफेद कलर की ऐसी भी दिखाई दे रही है।

और लाइटे भी जलती हुई नजर आ रही है और दीवारे पीले कलर की नजर आ रही है इस रूम की और यहा पे लाइटे दो जलती हुई दिखाई --

बहुत बडा सा जिम दिखाई दे रहा है जिम मे डिफरेंट डिफरेंट कॉलिटी टाइप की मशीने दिखाई दे रही है जिनसे बर्कआउट कर के आप फीट रेह सकते हो।

काली सरकारी कार्यालय दिखाई दे रहा है जहां पर एक व्यक्ति आपको खड़ा हुआ नजर दिखाई दे रहा है और यहा साइड कुछ मे लाइन से पेड़ भी नजर आ रहे है लगे हुए।

छोटे गणेशजी बड़े गणेशजी और भी पीछे कई तस्वीरे लगी हुई नजर आ रही है यहाँ पर--

यहा पर सफेद कलर की एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के पास मे कुछ पेड भी नजर आ रहे है कई जीने भी दिखाई दे रहे है।

मे जिम मे आपको एक्सर्साइज़ करने के लिए डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट टाइप की मशीन्स और ये दिखाई दे रही है और यहा पर आपको कुछ बॉडी बिल्डर के दिवारो पे फोटो पोस्टर लगे हुवे भी नजर आ रहे है।

और यहाँ पे कुछ गमले भी दिखाई दे रहे है और साइड मे एक व्हाइट कलर की कार भी रखी हुई है। थोड़ा सा एसी कंडीशन भी दे रहा है और बड़े बड़े पेड दिखाई दे रहे साइडों मे।

जो काफी सुंदर लग रहे है घर भी काफी अच्छा लग रहा है।

दिखाई दे रहा है रूम मे एक बेड है बेड पे सफेद रंग की बेड शीट तकिये है और रेड कलर का कंबल है और साइड मे एक अलमारी है जहा पर कई बेग भी दिखाई दे रहे है।